है इसमें रेनबो भी है।

पानी में कुछ घंटे खड़ी रहकर अपने भगवान को पूजा अर्चना करती हैं।

यह फोटो किसी पार्क की लग रही है।